लग रही है जो की बहुत ही सुंदर है यहां पर बहोत सारे झूमर भी लगे हुए--

इस तस्वीर में मुझे एक रेडीमेड कपड़े की शॉप दिख--

इस तस्वीर में हमें एक शोरूम नज़र आ रहा है जो कि एक बोल्ट पॉवर का शोरूम है यहां पर बहुत सारे --

जिनके आस पास हमें कुछ लोग यानि कि पर्ची लेके दिखाई--

जिसकी सर्विस की जा रही है हमें इसमें एक सर्विस --

देखने से लगता है कि यहां बारिश हुई है जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक खाने का रेस्टोरेंट नजर--

इस तस्वीर में हमें दिखाया गया एक केबिन है।

लग रहा है यह एक प्राचीन और एक अद्भुत महेल है यहां पर बहुत ही बड़ा बड़े दरवाजे और बड़े बड़े--

इस तस्वीर में हमें एक मंदिर की तस्वीर नज़र आ रही है जिस--

भगवान जी की मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है जिसके आसपास काफी सारे श्रद्धालु खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंदिर को फूलों से सजाया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक शोपीस नजर आ रहा है जो कि श्री कृष्णा जी का शोपीस है।